के फैन्स हैं औ पान छे चार ए.सी. के फैन्स है। लाल कलर का और पंजाब नेशनल बैंक लिखा हुआ है।

बिल्डिंग बन रही है और दो खम्भे है कार खड़ी हुए बालक फोन पे बात करते हुए जा रहा है --